कोचिंग पढ़ने के लिए आए है यह --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

बगल में एक बड़ी सी शीशा भी नजर आ रही है।

और यहाँ पे सब्जी मेंजैसे टमाटर गाजर --

तो एक बहोत ही पुरानी इमारत नजर आ रही है और --

वृक्ष भी नजर आ रहा है और --